जगह पर सारी सुविधाएं सारे सुख सामान उपलब्ध होत --

ता हा यहाँ लोग झूला भी झूलते है और साथ --

नास्ता करने के लिए खाना खाने के लिए और --

उधर एक काउंटर है जंहा --

आ वंहा गेरोसिन न स्वस्त --